और यहाँ पे कुछ स्टार दिखाई दे रहें है परदे भी दिखाई दे रहे है दीवालों पर यहाँ पे एक व्यक्ति येलो कलर की टोपी लगाया हुआ बैठा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे लाइट --

बर्तने मे खाना रखा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे चेयर्स दिखाई दे रहे है यहाँ पे गैस जलता हुआ दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रही ए_सी भी दिखाई दे रही लगी हुई ।

इस इमेज में मार्केट दिख रहा है जिसमें कई सारी सब्जियाँ बिकती हुई दिखाई दे रही हैं ।

जो की काफी हरे-भरे और लम्बे-लम्बे पतले-पतले दिखाई दे रहे है।

इसी मैच में एक लड़की डांस की स्टेप करती हुई दिखाई दे रही है जो की--

नीचे कारपेट और टाइल्स भी दिखाई दे रही हैं ।

इस इमेज में एक मैदान दिखाई दे रहा है और कुछ--

एक तालाब भी दिखाई दे रहा हैं ।

ड्राइंग बनी हुई दिखाई दे रही हैं ।

और यहाँ पर बहोत सारी गाड़ीया भी दिखाई दे रही है और कुछ लोग भी खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

और यहाँ पे कुछ गर्ल्स खड़े हुए दिखाई दे रही हैं ।

स्टेज पे तीन कुर्सिया लगी हुई दिखाई दे रही हैं ।

यहाँ पर कुछ गाड़िया दिखाई छोटे-छोटे घास पे लगे दिखाई डस्टबिन भी दिखाई दे रही है गाड़ी भी दिखाई दे रही है।